जिसमे सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है।

और इस ट्रेडमिल को बहोत सही तरीके से गुब्बरो से सजाया हुआ है।

जिसमें उसके नीचे काफी बालू और पुल के ऊपर लोहे का ढाँचा तैयार है।

एक मेज है जिसके ऊपर पार्लर की सामान रखी हुई है।

सामने मे बिजली का बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मर है जो पीले रंग का है।

जिसमें बहुत सारे हर प्रकार के वाशिंग मशीन आयरन है।

और ये दोनों व्यक्ति के पैर जो हैं वो नदी के आधे अंदर डुबे हुए हैं।

जो डेकोरेशन के लिए है।

और यहाँ लकड़ी का पूरा फार्म बना हुआ है फार्महाउस जैसा बना हुआ है।

एक विद्यालय है यह विद्यालय तीन मंजिला है।

कुछ गतौ में पीछे डाली हुई रखी दिखाई दे रही है।

बिजली की खम्बे है एक घर है जिसकी दीवाल ब्रिक की है।

बगल में एक कार है जिसको कार को भी सजाया गया है।